पर कुछ फूलों में से तो हरी लाल रंग की मिर्चियाँ भी आती हुई नजर आ रही है इसके दूसरी तरफ भी कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीचे एक टाइल लगी हुई है और बाहर से दरवाजा अंदर खुला हुआ आधा देखा जाता सकता है यह देखने में बहुत अच्छा--

यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने से एक महिला जाती हुई नज़र आ रही है इसने नकाप पहन रखे है।

सभी खाने एल्युमीनियम के बने हुए डिब्बे के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

सामने से कुछ व्यक्ति जाते हुए नजर रहे है। और यह व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसकी परछाई दिख रही--

ए जो की ए अलग-अलग डिब्बों में पैक कर के अलग-अलग स्थानों पे रखी गई है। सामने की तरफ भी इनको अलग से रखा गया हैं ।

तर डगल-बगल में बहुत सारे दीवाले जैसी कुछ बनाई गई है। और सामने एक द दरवाजा लगा हुआ है।

लाइट की तारे लगी हुई देखी जा सकती है। निचे मे कुछ लोगो को भी देखा जा सकता है।

बाहर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। लड़की ने शूज पहन रख--